के अंदर एक बहते हुए पानी का नजारा आ रहा है।

ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है जमीन कत्थई कलर की फ्लोरिंग का है।

ये चित्र एक शादी का गार्डन नजर आ रहा है।

यहां की छत पीली सी दिखाई दे रही है यहां पे कहीं--